है कपड़ा दिख रहा है। बहुत अच्छा आइसक्रीम है।

इसमें आलू दिख रहे हैं उन पर मिट्टी लगी हुई है बहोत सारे आलू हैं।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

लाइटें दिख रही हैं। मोर पंख दिख रहे हैं।

बहुत बड़ा मगरमच्छ है।

इसमें कागज के पन्नों पर कुछ चित्र रंग-बिरंगे बने हुए हैं।

इसमें बहुत सारी मोबाल दिख रही हैं।